सीढ़ी दिखाबत हउवे कलर उम्म भूरा बाटे बहुत पुराना कलर दिखत हउवे।

ये तालाब के सीन नज़र आवता रात के समय बा रोड पे लाइट जलाता।

बाउंड्री होअ पाइप घेरा बा और रास्ता टूटा-फूटा बाटे --

ब्यूटी पार्लर बा गाछ दिखाता --

और घास हरिहर-हरिहर पेड़-पौधा --

यहाँ पे छोटा सा दुकान होगा लाइट का सब सामान मिलत है लाइटिंग का झालर मिलती है और --

तब मजदूर लोग काम करत बाहेन।

गाड़ी आवे छै ज्यादा रोड पे दिखात हवे पेड़-पौधा दिखात हअ।

सफेद से लिखा है प्लेबॉय ।

वीवो का सेंटर बा का करत है नहीं डांस बा डांस से --

केव दफनाई गए हैवही चद्दर ओढ़त --

गांव टी एरिया सब हके कच्चा सड़क-उड़क बा गाड़ी खड़ा बा।

आदमी लाल कलर का शर्ट पेहेन के काला पेन्ट पहेन के खड़ा बा--

गार्डन है गार्डन

ये रेलवे स्टेशन के पटरी दिखात हेय उहे गड्ढा में पानी दिखात बा और आसमान दिखात हवे।